नीचे मे सफेद रंग का कपड़ा लगाया हुआ है।

पीछे घास आसमान झंडा भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में मुझे बहोत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है जो की पत्थर का है।

टेज को फूल और सफेद लाल नीला रंग का पर्दा से सजाया हुआ है।

जहां पर लाल और हरा रंग का कारपेट बिछाया हुआ है।

यहां पर बहुत ज्यादा फूल है।

सीलिंग पर सफेद रंग का बर्ड लगाया हुआ है।

चर्च का बाहर जीजस का फोटो लाल रंग का कपड़ा लगाया हुआ है।

यह फोटो में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में मुझे एक बाजार दिखाई दे रहा है जहां पर नीला रंग का तिरपाल लगाया हुआ है।

ये फोटो में मुझे दुकान दिखाई दे रहा।

दीवार पर काफी लिखा हुआ है।